और पानी वाले शॉवर भी चल रहे हैं और नीचे थोड़ी थोड़ी हरे भरी घास भी दिख रही है।

जोकि बनता हुआ नजर आ रहा है।

पाइपें जाती हुई नज़र आ रही हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है।

जोकि काफी बड़ी और ऊंची है।

येलो और रेड है और सामने एक काफी खुला मैदान है जिसमें काफी--

काफी अच्छी दिख रही है नीचे जमीन पर लाल रंग का मैट भी बिछा हुआ है।

और उसी के पास में एक खुला गार्डन भी है।

एक साइकिल स्टैंड भी है जिसमें--

काफी सारी साइकिल खड़ी हुई है और एक गेट लगा है जो की एक फिरोजी कलर का है पास में एक आदमी--

पर्दे लगाए गए हैं और वो की --

यह एक बहोत बड़ा ग्राउंड है।

यह एक पैलेस दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

यह एक बाजार दिख रहा जिसमें काफी सारा क्रश भी दिख रहा है और सामने काफी लोग खड़े हैं और--

लड़का फोटो करता हुआ नजर आ रहा है।

टोल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड और इस बिल्डिंग में एक काफी लोग खड़े हुए है।